और आ उसके बाजू मे भी बहुत सारे फाटकों की --

यहाँ एक सजावट दिख रही है जिसपर साउथ इंडिया के लोग मड्रासी लोग कं नाच और --

यह एक मंदिर का फ़ोटो दिख रहा है। आजू - बाजू में बहोत सारे लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह एक बुक अ बस डिपो है। बस डिपो में बहोत सारे बसेस लगे हुए हैं।

बहोत सारा हर रंग कलर का कर्टन दिख रहा है।

यह एक बगीचा दिख रहा है। जिस पर > लोग बैठे हुए हैं। आजू बाजू में बड़े-बड़े स्पीकर दिख रहे हैं।

यह एक बगीचा दिख रहा है। जिसमें हरियाली ही हरियाली दिख रहे हैं। नीचे हरियाली ऊपर हरियाली सब जगह हरियाली दिख रही है।

एक लाइट का खंभा भी उसमें दिख रहा है और कुछ लाइटें भी उसमें दिख रही है।

यहाँ एक ऑफिस दिख रहा है जो कार्यालय अभी बंद दिख रहा है।